एक घर दिखाई पड़ रहा है जिसके बाहर एक आदमी खड़ा है जिसने कोट पैंट पहन रखा है।

समान दिखाई पड़ा रहा हैं उसने नीले कलर की शर्ट पहन रखी है।

एक नाली बनी हुई है बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ पौधे लगे हुए है एक बेंच रखी हुई है।

खंबा खड़ा हुआ है बाहर की तरफ। कुछ खाने की प्लेटों के पोस्टर लगे हुए। एक डस्टबिन रखे ग्रीन कलर की दो मोटरसाइकिल खड़ी हुई है।

और पास में कुर्सियां पड़ी है बहुत सारी औरते बैठी है।

बहुत सारे जो है इधर से उधर सामान लटके हुए दिखाई पड़ रहे है।

यहां पे काफी सारा पानी दिखाई पड़ रहा है जो काले रंग का दिखाई पड़ रहा है।

कुछ वायरिंग वाली पाइपे दिखाई पड़ रही है दो पंखे लगे हुए सामने की तरफ काउंटर बना हुआ है।